बहुत से बड़े और बच्चे बैठे हुए हैं। यह पानी के चारों ओर हरे-भरे गाच्छ-वृक्ष दिखाई दे --

पानी की इस पार बोहोत सी जंगल दिखाई दे रहे हैं। जंगल के उस पार बोहोत बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बोहोत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

योगा करने से शरीर फिट रहती है और स्वस्थ लगती है यह जगह बहुत ही बड़ी है बहुत ही सुंदर है।

यह बगीचा है यह बगीचा में किसान भाई सब खेती करते हैं।

यह एक बहुत बड़ी ग्राउंड है यह ग्राउंड बहुत ही सुंदर दिखाई दिखाई दे रही है यह ग्राउंड में छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दूर से बहुत ही पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफी सुंदर है ।